एक व्यक्ति कुर्सी पे बैठा है उसने चादर ओढ़ी हुई हैऔर--

यहाँ पर मुझे डांस क्लास दिखाई दे रहा है डांस क्लास मे कुछ गर्ल्स डांस करती हुई दिखाई दे रही है इन लोगों को येलो पीछे की दिवार पर येलो क कलर --